और ब्लैक व्हाइट एंड ब्ल्यू तलर कलर का टी शर्ट पहेना हुआ है।

और थोड़ी दूर एक छोटा सा घर भी दिखाई दे रहा है।